एक पानी का बना हुआ टैंक है जिसमें नीले कलर का पानी भरा हुआ है और कुछ फिसलपट्टियाँ लगी हुई हैं जो की गुलाबी कलर की और सफ़ेद कलर की और हरे कलर की और पीले कलर की है।